दिखाई दे रही है जहां पर मुझे--

उसमें एक कटोरी में सब्ज़ी एक में पनीर की सब्ज़ी एक में दाल --

एक बड़ा सा पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है जहां दूर दूर तक--

लैपटॉप रखा हुआ दिख रहा है यहां बार बाहर रेड कलर से पी_यू_सी शुभम पी_यू_सी जार सेंटर लिखा है।

मुझे यहां पर एक पेट्रोल पंप --

भी दिख रही है। यहां पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

दे रहा है इसके अंदर एक वाइट कलर का काउंटर भी दिख रहा है।

जहां एक बड़ा सा कार्टून भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारी बुक --

दिख रही है यहां खाली जगह में अलग अलग दुकानें बनी हुई दिखाई--

मुझे यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ--

दिखाई दे रहा है जिसपे धारपुर जंक्शन लिखा हुआ है।

अगरबत्ती जलाई दे रही है यहां दो प्लेट में--

बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।